इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जो पानी से भरा हुआ है।

और सफेद बाल्टी भी दिखाई दे रही है।

जहां पर भगवान जी की मूर्ति भी हैं।

एक पार्क दिखाई दे रहा है जो बहोत ही खूबसूरत लग रहा है।

दिखाई दे रहे है जहां पर नीचे देखेगा बहुत सारे--

स्टेज बना हुआ है और ये बीच में सांता क्लास है रेड कलर का ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रहा है।

आस पास कुछ बच्चे भी हैं जिन्होंने--

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक स्कूल दिखाई दे रही है सामने बड़ा सा मैदान भी--

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक होटल दिखाई दे रहा है जहां का ढेर सारे कुर्सी और टेबल लगे हुए हैं।

किला दिखाई दे रहा हैं जिसकी सीढ़ियां हैं और काफी सारे दरवाजे भी दिख रहें हैं।

और नीला नीला आसमान भी नजर आ रहा है।

यहां पर एक जिम दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारी एक्सरसाइज की मशीने है रखी हुई है।

इस इमेज में देखिएगा एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है और साइड में बिल्डिंग नजर आ रही है।

इस इमेज़ में देखिएगा यहां पर ढ़ेर सारा--

कुर्सी भी रखी है और एक खिड़की भी दिखाई दे रही है।

यहां पर देखियेगा इस इमेज में एक बड़ा सा जिम दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक--

इस इमेज में देखिएगा यहां पर टेबल पर एक सैनिटाइजर की और स्प्रे की बॉटल दिखाई दे रही है दीवाल पर --